यहाँ पर तीन शटर है एक पंखा है और एक शटर में दो बोतलें है एक हरी वो एक लाल है।

पानी बह रहा है और काफी अच्छा नजारा यहाँ लग रहा है।

रोड पर काफी स्कूटी बाइक वगैरा खड़ी हुई हैं शाम का मौसम हैं और स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं एक इधर और एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड दोनों साइडों में लाइटें जल रही हैं।

ये एक पुरानी सी जगह लग रही है। इस जगह मे कलर है और इधर उधर बहोत सारे पेड़ है बिल्डिंग्स है और एक कार है जो है रोड पे निकल रही है।

ये एक क किसी बच्चे का जन्मदिन है और जहां पे ये पार्टी हो रही है।